बंधी हुवी है और कुछ बड़े से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है नदी के दोनो साईड में और यहाँ छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे है नदी के किनारे।

ये रोड दिख रही एक दुकान भी है साइड में कुछ स्टोर्स दिखाई दे सामने कुछ एक अंकल है उनके के हाथ में एक झोला है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग बंधी हुई है बिल्डि एक बिल्डिंग पर सीढ़ी टंगी हुई है यहाँ दो कलर के रस्सी लैज है यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है ।

यहा पर कुछ सब्जिया रखी हुई है कुछ फल फ्रूट रखे हुए है जैसे की बी रखी हुई है और कुछ के मिर्ची रखी हुई है कुछ कई प्रकार के सामान रखे हुए है।

बिंड अ अ वोर र याह परं रांगें के भी काई सारे पेड दिखाई दे रहे है बडे बडे कुछ छोटे पेड है।

यहा पर दो पत्थर कि मूर्ती मूर्ती बनी हुवी है एक चट्टान जैसी बनी हुई है यहा पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहा है उस पर यहा पर एक नीम का पेड है बडा सा।

ये दो लोग उस साइक बैठे है कुच्छ लोग ये मंदिर पे झंडे लगाई गई --